यहां पे केक बना हुआ है जो की चॉकलेट केक है ब्लैक कलर का।

ब्लू येलो और वाइट कलर के फैंस भी लगे हैं ब्लू कलर के--

यह पे कुछ कंस्ट्रक्शन जैसी लग रही है नीचे यहां पे ये रेत जैसी है।

वे कुछ बच्चे जो है ताइक्वांडो खेल रहे हैं आधे बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है आधे सीधे कपड़ों में है और वहां पर एक रेफरी है जिसमें व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

कमरा जैसा लग रहा है और वहां पे कोने में एक टेबल रखा हुआ है उसके ऊपर कुछ चीज रखी हुई है उसको फूलों से डेकोरेट किया हुआ है उसे पर ऑरेंज कलर के रेड कलर के व्हाइट कलर के फूल लगे हुए हैं।

जिसपे हिंदी में लिखा हुआ है साइड मे एग्जास्ट भी लगे हुए है और सामने कुछ बंदे दिख रहे हैं।

सामने डस्टबिन भी दिख रहा है ग्रीन कलर का रेड कलर की कुर्सियां --

जहां ये ग्रास जैसे लग रहा है और छोटे छोटे स्टोन है और एक परिंदा भी है।

वहां पे लिखा हुआ है वेलकम बुकिंग यहां पे टिकट वगैरा देते हैं और इसको बाहर से बहुत सारे झंडे वंडे लगे हुए हैं बहुत कलर के।

और काउंटर पे भी कुछ रखा हुआ है इसको बाहर से शीशे का फ्रेम बनाया हुआ है।

वहां पर कुछ स्लाइड्स भी रखी हुई है जिन पर ये बच्चे छलांग मार के पुल में जाते हैं और यहां से कुछ येलो कलर का छाता भी दिख रहा है।